सामने एक घर है जिस घर में--

सामने एक आदमी है जिसमें कुछ आदमी बैठे हुए हैं कुछ आदमी खड़े हैं।

एक घर है जिस घर में दो-तीन लड़की हैं और दो-तीन लेडीज --

इस तस्वीर में एक घर है इस घर में एक लड़का है जो बैठा हुआ है।

फील्ड दिख रहा है जिस फील्ड में हरे भरे घास है।

एक औरत है जिसके हाथ में हरा पॉलथीन --

एक झंडा है सामने एक घर दिख रहा है।

इस तस्वीर में एक घर है घर के सामने दो खिड़कियां हैं एक गेट है सामने एक रोड है।

अगल-बगल पेर-पौधे हैं।

इस तस्वीर में एक घर है जिसमें--

अगल-बगल ढेर सारे घरें हैं कुछ पेड़-पौधे हैं ।

इस तस्वीर में एक नाव दिखा है जिस नाव के बगल दो लड़के हैं खड़े अगल-बगल पानी है ऊपर आकाश है इसका कलर नीला है ।

इस तस्वीर में एक रोड है जिस रोड के अगल-बगल --

इस तस्वीर में सामने एक घर दिख रहा है जिस घर में --

अगल-बगल पूरे सामान टंगे हुए हैं ।

घर के ऊपर चिपकाए गए --

रोड दिख रहा है ऊपर आकाश दिख रहा --

इस तस्वीर में एक घर है जिस घर में ढेर सारे आदमी --

बीच में एक औरत है जो पानी पटा रही है अगल-बगल घर है।

एक दो घर हैं अगल-बगल घर हैं ऊपर आसमान है नीचे ढेर सारे सामान है मट्टी कचरा लगे हैं।

एक लड़की जो बैठी हुई है।

अ हम्म गोड़ में मोजा पहनी हुई है।

इस तस्वीर में एक घर दिख रहा है जिस घर में पूरे खिड़कियां हैं अगल-बगल ढेर सारे घरें हैं।

घर के आगे छोटे मोटे पौधे हैं ।

पीछे कुछ सामान्य हैं जो सजाए गए हैं।

इस तस्वीर में एक घर दिख रहा है जिस घर को पूरे बैलून से सजाया गया है दो-तीन औरतें हैं एक लेडीज हैं।

घर में ढेर सारी सामान्य टंगे हुई भी हैं।

सामने एक खिड़की है खिड़की में पर्दा टांगा वहां--

रखी हुई हैं कुछ सामान्य रखी गए हैं।

ऊपर आकाश है उसका कलर वाइट है अगल-बगल पेड़-पौधे हैं।

ऊपर आकाश है उसका कलर वाइट है अगल-बगल पेड़-पौधे हैं।

गार्डन में हरे भरे घास है।

कुछ समानें टांगे हुई भी हैं कुछ सामानें सरियाए हुए भी हैं।

कुछ समान अनमारी पर है कुछ समान टेबुल कुछ पर है।

ऊपर आसमान है अगल-बगल जमीन है।

इस तस्वीर में एक घर दिख इस घर में ढेर सारे सामान्य हैं।

इस तस्वीर में एक घर दिख रहा है।

अ रोड पर कुछ हरा कलर का सामान रखे हुए हैं।

पेड़ दिख रहा है अगल-बगल ढेर सारे घर हैं ऊपर आसमान है।

अंगूर और केले टंगे हुए हैं एक झंडे हैं।

सामने एक घर है घर के सामने एक लड़का है जो जिम कर रहा है अगल-बगल सारे सामान रखे हुए हैं।

और जमीन पर छोटे-छोटे घास है ऊपर आसमान है।

सामने हरे-बड़े खेत दिख रहे हैं उसमें एक घास भी हरे भरे हैं बीच में रोड है रोड के अगल-बगल छोटे-छोटे पौधे हैं।

कुर्सी टेबुल पर कुछ औरत और लेडीज बैठे हुए हैं और कुछ सामान टेबल पर धड़े हुए हैं।

और एक आदमी अलग खरे हैं।

कुछ सामान ऊपर टांगे हुए भी हैं कुछ सामान नीचे हुए हैं रखे एक लाल कलर का बैग है।

पर हाथ धरे हुए हैं घर है घर के ऊपर एक--

आगे एक गेट है गेट का कलर ब्लू है रोड है।

एक घर है और शीशे के कुछ लगे हुए हैं।

सामने एक रोड है जिस रोड पर एक आदमी चल रहा है एक आदमी बेग लिए हुए जो लाल कलर का है।

एक टेस्पर्मा है उस पर तार गए हैं एक मोटा पोल है अगल-बगल पेड़ पौधे हैं ऊपर आसमान है।

पानी दिख रहा है पानी में एक नाव नाव में एक --

और मट्टी है मट्टी पर ढेर औरत और जेंस बैठे हुए हैं।

टोपी लाल पहने हुए हैं दो बस हैं अगल-बगल पैर हैं एक घर है।

सामने तीन-चार बगाइचे दिख रहे हैं बड़े-बड़े पेड़ हैं।